और मेरे ऊपर लाइटे लगी हुई है उनके नीचे वॉशबेसिन रखा हुआ है।

के नाम से एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर येलो अक्षरों में लीखा हुआ है।

साइड में पेड़ पौधे बने हुए हैं उसके ऊपर--

और वो वहाँ पर खड़े हुए हैं उनके पास हथियार भी है।

उसके साइड मे एक का ए_सी लगा है। उसके उपर एक पंखा लगा हुआ है। उसके साइड मे चॉकलेटी कलर के--

उसके नीचे टाइल का एक फर्श बना हुआ है जिसके ऊपर रंग बिरंगी टाइले लगी हुई है साइड में एक डोर है।

मेरे को एक कॉर्न दिखाई दे रहा है कमरे का।

और एक तरफ काफी तरह के इंसान खड़े हुए हैं।

फिलाल में एक फुटबॉल है और ओ एक फोन पे बात कर रहा है।

वहां पर फूलों से एक हार भी बना हुआ है जिसका रंग लाल--

इसमें कीबोर्ड का सेट रखा हुआ है उसके साइड में एक दीवार घड़ी बनी हुई है।

मेरे को एक बुक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लेटर बॉक्स लिखा हुआ है।

इसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ है।